और पास मे कैंची और अनेक प्रकार के डिब्बे और कागज चिपकाने के लिए गोंद रखें हुए है और--

मोबाइल फोन है और शीशे में अपना चेहरा देख रही है।

और उधर एक आदमी के हाथ है। कुछ शायद पत्ता में कुछ डाल रहे हैं।